अ पानी गिरा हुआ है एक लड़का यहाँ पर जाते हुए दिख रहा है और सामने एक अ--

जिग जैग टाइप का कुछ बना हुआ है एक ग्राउंड है और इसके बीच में ये यहां पर मीडिल में रखा गया है इसको।

ये एक प्राचीन किला टाइप का है आ आ--

और वाइट कलर का है और इसमें बहोत सारे रूम लॉक होंगे वैसे ही दिख रहा है ये--

अ जोकि मारुती सुजुकी का शोरूम अ लगता है सामने मारुती सुजुकी का बोर्ड लगा हुआ है बैनर।

यह सामने में एक वाइट कलर का बहुत ही सुंदर ये--

उपर में छत है जिसका गेल्कुन टाइप का दिखरा है।

और सामने में मोटे-मोटे से पेड़ दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारी गाड़ियां पार्क के फोर व्हीलर टू व्हीलर

एक लड़की को प्राइस दिया जा रहा है और--

कोई चीज कोई डे सेलिब्रेट हो रहा है शायद यहां पर--

और सोफे बिछाए हुए है और एक टी_वी भी है टी_वी भी देख सकते है आप--

मतलब कोई चीज का ये वेट नी रिये कोई ऑफिस का या फिर कोई ये चीज का --

आ आ सोलर सिस्टम का पिक्चर ड्रा किया हुआ है।

यहाँ पर एक प्लांट का एक नर्सरी है जहा पर मतलब प्लांट बेचा जाता है।

आ क्योंकि हर पम्म या पर अ अगल अगल पॉट पे प्लांट लगाये है और अलग अलग--

ये एक अ लॉन टाइप का बना हुआ है और यहाँ पर एक रास्ता जाते हुए दिख रहा है एक अ--

अ उसके बाहार का जो बाउंड्री में जो बोहोत सारे यहां पर नारियल केले के पेड़ दिख रहे है लम्बे लम्बे --

बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है जो की आस पास में पूरा पेड़ो से भरा हुआ है और ये--

और इसका पंख बहुत ही सुंदर लग रहा है लगता है पक का--

या पर एक इस्टेचु है ये बुध्धा का इस्टेचु है जो की सिल्वर कलर किया वा है।

और बहोत उचाई में इसको रखा गया है यहा पर एक लड़का दिख रा है।

यहाँ पर सामने कोई अपार्टमेंट टाइप का दिख रहा है और इसमें में लिखा हुआ है बीयर्स --

यहां पर एक बहोत बड़ा सा एक ये टाइप का है मतलब बहोत बड़ा सा एक बिल्डिंग टाइप का हैं।

और अ इसमें कुछ ज़री का का काम किया हुआ है साइड में अ लेज़ बैठाया हुआ है और आस पास में और भी कुछ सारियाँ दिख रही हैं।

और शायद यह साड़ी का दुकान है और ऐसे हैंड किया गया है।

और यहाँ पस अ रास्ता बता रहा है कि कौन सा कहाँ है किचेन कहाँ है ग्लास हाउस कहाँ है रेम्बो हट कहाँ है।

जो ये यहां पर रखा हुआ एक गार्डन के बीचों बीच में--

ये एक बड़ा सा पुराना बिल्डिंग दिख रहा है मतलब बिल्डिंग के पीछे का जो हिस्सा है वो दिख रहा है ।

यहां पर एक लड़का दिख रहा है जो की ब्लैक शर्ट में है।

और अपना सेल्फी ले रहा है बाल थोड़ा सा खड़ा खड़ा है उसका--

एक प्लेस है टूरिस्ट स्पॉट बोल सकते हैं।

कुछ फूल लगे हुए और यहां पर एक बॉस का ये बनाया हुआ है।

और यहाँ पे एक अः टेबल है वहा पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है चेयर रखा हुआ है ऐ_सी है।